यहाँ पर हर एक प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है । एक पेशेंट का डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जा रहा हैं । घुटने का दर्द का इलाज किया जा रहा है और बहुत बढ़िया इलाज होता है और बहुत बढ़िया मेडिसिन यहाँ प्रोवाइड की जाती है ।

यह एक हॉस्पिटल है। जो बहुत ही अच्छा बनाया गया है एवम काफी साफ सुधरा दिखाई पड़ रहा है यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे है और बहुत ही योग्य है यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है इसमें आई --

यह एक त्यौहार है जो त्यौहार खत्म होने के बाद माता की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है इसके अंतिम दर्शन के लिए लोगों को बहुत बड़ी भीड़ है इस मूर्ति की सजावट में --

अ उपयुक्त सामान रखा गया है जिससे इनको अ आसानी सी माहौल में ढल सके और यह देखने के लिए लोग बाहर से भारी मात्रा में आते हैं।

उम बांध बांधा गया है जिससे की इसमें और कोई दूसरा चीज ना आ सके लोग किसान खेती करने के लिए एक धान लगाने से पहले धान का बिया लगते हैं जिससे जे खेती होती है।

यहाँ पर सैलून में दाढ़ी भी बनाया जाता है बाल कटवाएँ जाते हैं और शादी विवाह के टाइम पे मेक-अप भी किया जाता है जो बहोत बढ़िया हो --

यह पार्क बोहोत अच्छा और बढ़िया पार्क है। यहाँ पर लोग अ शाम के समय घूमने के लिए आते है और बच्चे खेलने के लिए बहुत अच्छा रहने यहाँ पर रत में ---